लकड़ी की खाने बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहां एक कंप्यूटर और कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक महिला भी दिखाई दे रही है।

यहां पंडाल भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक होटल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक अग्निशमन यंत्र भी दिखाई दे रहा है।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

लोहे के दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक व्यायाम केंद्र का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक इमारत बना हुआ दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां एक पर्दा भी लगा हुआ है।

यहां कांच की एक मेज भी दिखाई दे रही है।

यहां एक बहुत बड़ी लाइट भी दिखाई दे रही है।

स्टील से बना हुआ खंड भी दिखाई दे रहा है।

पंखे भी दिखाई दे रहे हैं यहां बल्ब भी जलता दिखाई दे रहा है।

हैप्पी दिवाली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां चारों ओर से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक बागीचा का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां बैठने के लिए कुछ बनाए हुए गए हैं।

यह काफी सुंदर दृश्य है।

यह दिन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पानी भरा हुआ है यहां बहुत सारे लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक दो चक्का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।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

ए_सी भी लगा हुआ है यहां कुछ पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।